सामने नजर आ रहा है की यह कोई मकान है।

और इस लाइब्रेरी में कुछ विद्यार्थी पड़ रहे है एवं कुछ कुर्सियां खाली है और उनमें किताबें रखी हुई नजर आ रही है।

और दीवार में एक बोल्ड है उस पे कुछ नाम भीं लिखा हुवा हैं एवंम इस बोल्ड के ऊपर ए_सी भीं लगी हुई दिख रहीं है।

सामने नजर आ रहा है कि यहां पर एक आदमी--

कुछ ड्रेस के प्रेस कर रहा है स्त्री करता दिख रहा है और इस आदमी के मुंह पर मास्क पहना हुआ है।

कुछ बोर्ड में आई_सी_आई_सी बैंक नाम लिखा हुआ है और नीचे एस_टी_एम भी लिखा हुआ है और इधर के साइड एक होटल है।

मंदीर के पास में एक बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे मेन रोड है और रोड पे गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही है।

उधर टेबलें लगाई हुई है खाना खाने के लिए।

और मेज पे एक कंप्यूटर लिखा रखा हुआ है और पास में एक कैलकुलेटर रखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने कि तरफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग पर कुछ --

और यहां पर अलग अलग प्रकार की सब्जा सब्जी दिखाई दे रही है जैसे टमाटर गाजर आलू --

अंदर पानी का एक कैंपर भी दिखाई दे रहा है होटल के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने देखा जा सकता हैं कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया हैं और इस स्विमिंग पूल के आस पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।